यहाँ पर बेंच भी डली हुई है और बोहोत ही फाइनल है ये जगह और ऐसी जगहे हर जगह होनी चाहिए।